यह अपने देश के लिए जान न्योछावर करते है जिस लिए इनको देखकर हम प्रेरणा ले सकते है इसलिए इसकी फोटो लगाई गई है।

यह सड़क कि फोटो है यहां आस पास पेड़ पौधे लगाए हैं आसमान एकदम साफ है।

यह हमारे देश के नौजवान की फोटो हैं गले में बंदूक लटकाए हुए सीना तान के खड़े है।

ये किसी किसी के फोटो है इसके --